सारी नाव दिख रही है नाव कुछ येलो कलर में दिख रही है कुछ ऑरेंज कलर की दिख रही है कुछ ब्लू वाइट कलर में दिख रही है।

पोस्टर में व्हाइट कलर में लिखा हुआ दिख रहा है नीचे में कुछ तो जो है ग्रीन कलर के पौधे रखे हुए दिख रहे है काफी सुन्दर लग रहे--

और यहां पर कुछ पर्सन इधर-उधर मे खड़े हुए दिख रहे हैं एक पर्सन खड़ा है जिसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहन रखी है। एक ने ब्लैक कलर की पहन रखी है एक लेडिस खड़ी हुई दिख रही है जिसने ----

बिल्डिंगे दिख रही है बिल्डिंग का पेंटिंग नजर आ रहा है पेंटिंग कलर जो है येलो कलर में दिख रहा है और कुछ कांच वगैरा लगे हुए दिख रहे है यह पे जो ब्लू कलर का दिख रहै है आस-पास में कुछ पेड़ वैगरह भी दिख रहे है ग्रीन कलर में दिख रहे है सामने बाउंड्री दिख रही है।